भवन दिख रहे हैं जो वाइट कलर के हैं जिसमें कार्यालय नगर परिषद बगहा लिखा हुआ है।

घर गुलाबी कलर का है घर के नीचे टाइल्स लगे हैं जो उजला हैं काला है।

ऊपर एक बोर्ड लगी हैं जिसमें बैष्णबी इंटरप्राइजेज लिक्खा है।

दूर में पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

कुछ उजला कलर में है नीचे कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हैं।

ऐसा लग रहा है डॉक्टर का रूम है पीछे से खिड़की लगी है ऊपर से ए_सी लगी है।

जिसमें रस्तरा पार्ति पब्लिक स्कूल लिखा है।

कुछ समान डिब्बा में है चॉकलेट है बिस्किट है कुरकुरे है।

सीढ़ी ब्राउन कलर की है एक पाया लगा है कुछ समाने रखी हैं।

एक शीशा भी लगा हुआ है। जो बहोत बड़ा है।

जिसके ऊपर एक बहोत बड़ा बोर्ड लिखा है।